देख के लगता है जैसे की शाम का वक्त है।

और यहाँ बीच म मिट्टी भी इस तस्वीर में देख पा रहे हैं।

जोकि एक पेड़ के साइड में बैठ कर फ़ोन चला रहें हैं।

एवं अपना काम कर रहे है।

साथ ही इस कमरे में ऊपर की ओर लाइटस और लैंप लगा रखे है।